यह एक गार्डन है गार्डन में चेयर भी रखी हुई है बैठने के लिए लोगों के और यहाँं पर छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं।

जिनकी कटाई की हुई है और पेड़ भी लगे हुए हैं।

एक मैंरिज हाल बनवाउंगा जिसमें ऊपर की ओर लाइटें लगीं हैं और कुर्सियां तो रखी हुइ हैं पर इनमर कोइ इनपर कोइ बैठता नहीं है।